मकान दिखाई दे रहा है मकान में व्हाइट कलर के पैंट हुआ है दिखाई दे रही है और पेड़ पर लागि हुई हैं ।